जो मगरमछ अ-अ उठ-उठ के आया है ब जमीन पे --

इसलिए और अ एक जन अ लेट के लेट लेट क लेट रहा है और एक जन ब बैठा हुआ है।

स्टेशन यहाँ होता था गा रेल का अभी भी हो रहा है जा ताकी लोग अच्छे से अच्छे जगह जा पाए।